लोरिया कंपनी से है और वहां पे बहोत सारे--

फूल से सजावट किया हुआ है और वहां पे जीव का फोटो बना हुआ है और कुछ आदमी उस पे जा के सेल्फी पॉइंट खिंचवा रहे है।